काले रंग की शर्ट --

बहोत सारे लोग भांगड़ा पा रहे हैं।

एक आदमी अपनी दाढ़ी कटवा रहा है।

जे_सी_बी के --

बहुत सारे बेंच पड़े--

ये थाली दिखाई दे--